ब बहोत सारा पिल्लों रखा हुआ है साइड में खिड़की में पर्दा हैं।

उसके बाद ढोल है नीचे टाइल्स लगी हुई है उसके गेट के गेट में ग्रिल की गेट लगी हुई है बाहर बाहर पावदान है।

यह एक स्टोर है किताब की स्टोर इस स्टोर का नाम में पुस्तक भंडार।

उसके बातीयां और चित्रांश लगी हुई हैं।

रोड पे एक लड़का खड़ा है उसके हाथ में फोन है सेल्फी लेता हुआ--

दोनों साइड पटरियां ये बीच से रोड है।

कुछ दो लोग बैग टंगे हुए है धोती पेहने हुए है।

यह एक साड़ी सूट का स्टोर है।

उस अलग अलग दराज में साड़ी रखी गई है बहोत सारी--

गद्दा लगा हुआ है गद्दा में वाइट का चादर लगा हुआ है।

ये बहोत बड़ा ग्राउंड है ग्राउंड में हरियाली है।